जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में जो मूर्तिकार हैं जो चित्रकार हैं वो --

इस समय कोविड का पीरियड चल रहा था। उस समय वस्तुतः सभी दुकानों के बाहर कुछ ऐसा ही थीम सीन था यहाँ पे --

पुल को बनाने में काफी लागत आई है। हाल में ही यू.पी. सरकार के द्वारा काफी अधिक फंडिंग की गई।

हमारे शहर का जो पार्क है जिसे राज्य सरकार ने हाल में ही एम.एल.ए. के द्वारा --

तो ये लोग दिल्ली से या फिर सूरत गुजरात वगैरह से मुंबई से भी कपड़ा का इम्पोर्ट करते हैं तो उसी में ये लोग ला कर के अपना गोडाउन में रखे हुए हैं और फिर ये लोग यहाँ से इसे डिपैकिंग रिपैकिंग कर के बेचते हैं।